अ इस बैंक के बाहर टू व्हीलर्स गाड़ी और लोगो की भीड़ दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारी बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

--ओर बस के पीछे तरफ एक बिल्डिंग है जहाँ अस्पताल है | यहाँ एक बोहोत बड़ा अस्पताल है ओर सामने बोहोत सारी यहाँ बस खड़ी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे कुछ घर बोहत सारे घर और पहाड़ है य एक पहाड़ी क्षेत्र है।

यह एक स्वीट्स का स्टोर है जहाँ पर लिखा हुआ है अरुण स्वीट्स ।

और सड़क के आस-पास में खूब सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं आजु-बाजु में पार्क बने हुए है यहाँ पर उन पार्को को बहुत अच्छी तरह से पेड़ पौधों से डेकोरेट किया गया है।